यहाँ पे बहोत बड़ा मंदिर का पंडाल है पंडाल में बहोत सारे आदमियां है पंडाल में बहोत सारे गुब्बारे लगे हैं और भवन भी बहोत सुन्दर है और पंडाल में बहोत सारे --

लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में इतने सारे बुक रखे हुए हैं मानो जो पढ़ने का मन करता है वो हमलोग पढ़ सकते हैं।

एरोप्लेन अच्छा लगता है देखने मे पर एरोप्लेन हम लोग कभी उसपे बैठे नहीं है।

यहाँ पे बहुत सारे अअअ अलमारी में समान रखे हुए मानो चलो अगरबाती है साबुन है।

मॉल मे इतने सारे बुक रखे हुए है मानो पूरे मॉल मे किताब का ही ढ़ेर लगा हुआ हो।

और बुक के बहुत बड़ी दुकान है बहुत बहुत बहुत बड़ा दुकान है।

खेती मे इतने सारे फसल अच्छे लगे हैं मान के चलो मान के चलो फूल फुलकोभी इतना सुन्दर लग रहा है की हम लोग उसको सब्जी यूज़ करते हैं |

और नाव बहुत ही सुंदर एक अ पानी का एक सफर करने का हे मजा कुछ और होता है पानी जहाज में बहुत चढ़े आदमी बैठ सकते हैं।